इस इमेज में यहां पर एक मॉल दिखाई दे रहा है जहां पर हैंगर में कपड़े टंगे नजर आ रहे हैं।

यहां पर देखिएगा एक दुकान दिखाई दे रही है यहां पर देखिएगा कुछ डिस्पोजल भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर ट्रैफिक नजर आ रहा है जहां पर ऑटो रिक्शा बाइक खड़ी दिखाई दे रही है।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहां पर दो बच्चे दिखाई दे रहे है जिनके हाथ मे कैंडल नज़र आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक इस्टेज दिखाई दे रहा है जहां पर दो लड़के लड़कियां गाना गाते नजर आ रहे है।

इस इमेज में यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है जहां पे कुछ लड़कियां योगा करती नजर आ रही हैं।

इस इमेज में यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है जिसका फूलों से डेकोरेशन होता नजर आ रहा है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक जिम दिखाई दे रही है जहां पर एक सफेद कलर की मशीन नजर आ रही है।

इस इमेज में सामने यहां पर एक इमारत बड़ी से दिख रही है जहां पे जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है अंदर देखिए यहां पर एक अ मानसिंह हॉस्पिटल लिखा नजर आ रहा है।

इस ईमेज में सामने यहां पर एक नर्सरी दिखाई दे रही हैं जहां पर कुछ पौधे यहां पर नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है और यहां पर नीचे ट्रैक भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जहां प कुछ बच्चे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बड़ी सी इमारत नजर आ रही है और बोर्ड पे कोस वर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे देखियेगा सामने यहाँ पर कुछ दुकानें दिखाई दे रही है और यहां पर दो तीन लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर सामने कुछ दुकाने दिखाई दे रही है जिनके शटर बंद नजर आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक मीटिंग चलती दिखाई दे रही है और ऊपर बड़ा सा पोस्टर भी लग रहा है।

इस इमेज देखिएगा सामने यहां पर एक गेट दिखाई दे रहा है और अंदर कुछ घर बने नजर आ रहे हैं।

इस इमेज मे देखियेगा सामने एक बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है जहां पर कुर्सी टेबल लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक रूम दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहाँ पर कुछ फ्रूट नजर आ रहे है जैसे नारियल केले संतरा चिकू --

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक अ रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है फोकस में यहां पर पिज्जा बर्गर रखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बड़ा सा ब्लू कलर का बोर्ड लगा है जिस पर एच_पी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बस स्टॉप दिखाई दे रहा है जहां पर देखिएगा सामने एक बस खड़ी हुई नजर आ रही है।